सामने एक मंदिर में- का चबूतरा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक मूर्ति बैठी हुई है जिसके नीचे में --

यह बहुत बड़ा ग्राउंड दिख रहा है जहाँ नीचे में टाइल्स लगी हुई है और उसके ऊपर हरी मैटे बिछी हुई है जहाँ बहुत सी लेडीज है और जेंट्स है।

यहाँ कुछ बच्चे बैठे हुएँ हैं बेंच और टेबिल में सामने अपने में कुछ बनाते हुए दिखाई दे रहें हैं ।

कुछ गाजर भी रखे हुए हैं और कुछ केले हैं टमाटर वहाँ केरेट में रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और केले टंगे हुए रखे हैं।

एक है यहाँ एक के काम में कार में कुछ वेल्डिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। उसके पास कुछ वेल्डिंग की मशीनें रखी हुई हैं।